बिजली का पोल दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

हाथ पे अलता लगा हुआ है सामने बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ

के बाउंड्री पर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है।

इस दृश्य में बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

घड़ दिखाई दे रहा है।

सामने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

आसमान भी नजर--

इस दृश्य में बहुत बड़ा हॉल नजर आ रहा है।

एक लेडिस बुर्खा पहने हुए सामने दिखाई दे रही।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

ए_सी का मशीन लगा हुआ है ।

इस दृश्य में रोड नजर आ रहा है।

ठेला में कुछ समाने दिखाई दे--

जिनका कलर हरा है एक गेट दिखाई दे रहा है जिस--

रोड भी नजर --

इस दृश्य मे बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है।

सामने आसमान दिखाई दे रहा है।

जिसमें कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं आसमान भी दिखाई दे रहा है।